न्योता है दो ठो गेट भी लगी। लोहा का फो फाटक है दो ठो गेट है इसमें। आगे में बरामदा बना हुआ है। आगे में बहुत मट्टी का भी --

पार्क है। पार्क में बड़ा आदमी घूमता है। बच्चो घूम रहा है सब घूम रहा है सब दिख रहा है। दो आदमी घूम रहा है। बच्चा सब उधर घूम रहा है। देखने में बहुत बढ़िया लगता है। से बगल गाछो है चारो बगल मे छोटा-छोटा बड़ा गाछ है। देखने में बढ़िया लगता है।

ये तो लगता है कोई पार्किंग है। देखते हैं पानी आदमी आदमी एक बड़ा सा आदमी दे रहा है। पानी सब चीज में दे रहा है। गमला में पानी दे रहा है। गाछ में पानी दे रहा --